यहाँ पे पेड़ बढ़िया-बढ़िया है और नीचे भी अच्छा लग रहा है बढ़िया अच्छा सा पेड़ भी छोटा-छोटा है मोटा पतला जो भी है।

बिच में बच्छा है एकदम बढ़िया बाइक भी खड़ा है।

सात गो खिड़की टाइप का दिख रहा है ऊपर में दो दू दरवाजा पांच तीन ठो और गेट टाइप का दिख रहा है सीढ़ी लगा दिया है बैठने के लिए--

बहुत सारा पेड़ हे और का प्रतीक्षालय बना है।

मस्त मेन रोड है हरा भरा पेड़ पौधा लगा है गेट के ऊपर सीढी़ भी लगा है पाइप लगा दिए हैं।

बहुत पुराना मंदिर है आगे तरफ हरा- भरा हैं।